इस चित्र में दिखाई दे रहा है टेंट व्हाइट ग्रीन ब्लू और लाल-लाल पत्थर और सफेद पनियाँ आसमान लहराता है ओर ग्रीन ओर--

इस चित्र में दिखाई दे रहा है कुछ हिंदू की देवता है और वह बड़ी गोल्डन कलर की हे |

ब्लू कलर का छोटी बच्ची है और भाई को साड़ी पहनी हुई एक आदमी व्हाइट एंड जींस पहना हुआ है और ग्रीन कलर का मैच है|

आसमान उजली है हर जा रहा है लाल आसमान--